यह है होतिया टोटिया दुकान शाह जहां दो साइकिल खड़े एक लड़का है शायद उसका हाथ दिख रहा है।

सामने कुछ दिखाई तो नहीं दे रहें कुछ पार्क वगैरा होगा।

हमारे तो पता भी नहीं हमारे साथ गर्लफ्रेंड भी नहीं है हमारी हम ये सब नहीं पता।

क्या यार मतलब बढ़िया तो बना है क्या होगा इसमें कुछ नहीं हुआ जो लोग है उस वो अपने हिसाब से बनाएगा।

ये तीन लोग हैं दो लोग बात कर रहे हैं वह कस कस्टमर होगा।

इसके बाहर या फिर घर के बाहर ऐसे लगाने से डिजाइन टाइप का कुछ बन जाता है बड़े--

और दो तीन लोग हैं जो है--

कुछ नहीं जानते सबसे बढ़िया सबसे प्यारा अपनी गाय--

डेम दिखने में बहोत सुंदर या कुछ भी हो या बढ़िया सु--